यहाँ बोहोत सारी गाड़ियां खड़ी हैं। जिनका कलर सफ़ेद लाल काले हैं और साइड में एक पेड़ लगा है और सामने कुछ लोग हैं।

उससे पीछे एक गोदाम है। जिसका कलर नीला और सफेद है।

और इसकी जो छत है। उसपे कुछ लाइटें लगी हैं और छत और दीवार सफ़ेद कलर की है।

और सामने एक कांच का गेट है और सामने उसके अंदर कुछ लोग हैं।

इनमें एक गाड़ी भी खड़ी है बाइक और उसके साइड में एक छोटा सा मकान बना है। जिसका कलर सफ़ेद --

नीचे कुछ पेड़ लगे हैं और कुछ लाइट के ख़म्भे लगे हैं। नीचे जमीन है जिसपे कुछ टाइल्स लगे हैं छोटे-छोटे वाले और उसके साइड मे कुछ घास उगी ।

सामने एक जहाज खड़ा है अ-जिसका कलर कथई है और उसके ऊपर कुछ मशीने लगी हैं।